कुछ बर्फी मिठाई और भी कई सारी चीजें जमी हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा गुरु द्वारा बना हुआ है।

गुरुद्वारे में एक बड़ा सा हॉल बना है ।

दो लड़कियां और दो लड़के--

इस पिक्चर में एक बड़ा सा तोतों का पिंजरा बना हुआ है।